कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर प्लांट्स लग रहे हैं कलरिंग प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पर खजूर के और नारियल के पेड़ भी लग रहे हैं यहाँ पर बड़े-बड़े पांच छे।

टी-शर्ट पेहन के बैठे हुए हैं म डार्क ब्लू कलर का पेन्ट पेहन के बैठे हैं और यहाँ पे बच्चा वाइट कलर की टी शर्ट पेहन के बैठा हुआ है और ब्लैक कलर की पेन्ट पेहना हुआ है पानी मैं कुछ कर रहे हैं।

बनी हुई है पीले कलर की और लाल कलर के पट्टे बने हुए हैं बहोत बड़ा गेट बना हुआ है यहाँ पर बहोत बड़े पिल्लर बने हुए हैं और यहाँ पर काम चल रहा है कच्ची दीवार बनी हुई है एक कार जा रही है अंदर को और ये ऊंचाई पे है।

ककड़ी रखी है बैगन रखे हैं आलू रखे हैं मम हरी मिर्च टमाटर मटर रखी हैं गाजर रखी हैं यहाँ पर टिंडे रखे हुए हैं एक आंटी खड़ी हुई हैं पिंक कलर की ड्रेस पहन के एक अंकल सामान निकाल रहे हैं चेक्स वाली शर्ट पहन --

कुछ वाकिंग स्त्रीटस स्त्रीटस करके है यहा पर ये आंटी फोटो क्लिक कर रही है बीच में से ओला जा रही है मार्केट टाइप दिख रहा है यहा पर लाइट्स जल रही है यहा पर कुछ लोग जा रहे है यहा पर।

और यहाँ पर टिशू पेपर रखे हुए हैं और एक अ एक अंकल उनको उस लड़की को देख रहे --

बस जा रही है यहाँ पर सब बैठ रहें एक पुलिस वाले खड़ा हुए है यहाँ पर कुछ लोग छत के ऊपर बैठे हुए हैं एक सफेद कलर की एक कार खड़ी हुई है।